ये स्कूल का क्राफ्ट बना रहे है तीन तीन बच्चों की टीम बनी हुई है जो पेपर क्राफ्ट बना रहे है स्कूल में बहुत से बच्चा लोग के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस प्रेक्टिकल करवाया जाता है।

ये फोटो किसी सलून का है जहाँ बच्चे को मतलब सिखाया मतलब बच्चो पे हेअरकट करके उनको सिखाया जा रहा है की ऐसे हेयरकट करना है।

तो यहाँ पे गर्ल्स योगा सेंटर थी लड़किया लोग अपनी मैट पे ग्राउन्ड मे योगा कर रही है।

ये किसी हॉस्पिटल का पिक है जहाँ पे ये डॉक्टर किसी का टेस्ट किए है तो वही चेक कर रहे है टेस्ट क्या पीक है पीछे लेडी और नर्स वार्डबॉय सब ब है डॉक् मैन डॉक्टर भी है।

राखी कैसे बनाते है इनको रक्षा बंधन में इन्हे प्रोजेक्ट मिला हुआ है राखी बना दी उलोग राखी बना रहे है पेपरवर्क से की राखी कैसे बनाते है।

ये स्कूल का किसी बच ये दोनों तीनो बच्चे डांस सिखने आए है गिना किसी गाने के लिए प्रिपेयर कोरियोग्रा किया जा रहा है।

तो यहाँ पे सारे चिल्ड्रनस आते है शाम के टाइम खेलने ये लोग खेल रहे है बच्चे लोग बहुत सारे बच्चे है ये लोग अपने झूला से खेल रहे है।